यहां पर बहुत सारे लोग बाहर खेलते और घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

चलती हुई दिखाई दे रही है और एक कार है जो काली कलर की खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ये एक मंच की तस्वीर दिखाई दे रही है जिस पे लाल कलर का कारपेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर की धोती पहनी है वो कुछ डांस परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारी लाइटें लगी हुई भी दिखाई दे रही हैं जोकी गामलो में लगी हुई हैं।

यहां पर एक आदमी स्टेज पे खड़ा होकर माइक में कुछ बोलता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक चैनल गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं पास में एक ए_टी_एम मशीन भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक बच्चों का स्विमिंग पूल बना हुआ है।

इसमें से छोटे वाले स्विमिंग पूल के पास बहोत सारे गमले भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो किसी गुरुद्वारे का हॉल दिखाई दे रहा है।

बड़ा बहोत ही बड़ा मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत सारे लोग मंदिर के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारी गाड़ियां भी खड़ी है।

यहां पर बहुत सारे खिड़की और बहुत सारे डिजाइन वाले दरवाजे बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

और बाहर की तरफ कुछ टेबल्स रखी हुई दिखाई दे रही है और आइसक्रीम का बोर्ड भी लगा है।

यहां पर एक लड़का है जो बीच में खड़ा होकर तस्वीर लेता हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर ऊपर की ओर इसपे लाल बोर्ड से नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।